इसमें एक पेंट को दिखाया गया है यह पेंट बहुत शानदार है किसी व्यक्ती का पेंटिंग बनाया गया है यहाँ पर बहुत सारे--

यह एक मैदान है इसमें बहुत सारा काम किया जा सकता है इसमें झोपड़ी को बनाया जा सकता है जिसमें लोग रहते है।

यह बिल्डिंग बहुत अच्छा है देखने में| इसके पीछे एक बहुत सारे बिल्डिंग और मंदिर है उसके पीछे एक स्कूल है ।

बहुत पुराना मंन्दिर है इसमें लोग पूजा करने के लिए आते है यह मंदिर बहुत पुराना लग रहा है।

यहाँ बीजेपी का झण्डा टांगा गया है इसमे इसमें महाराणा प्रताप की तरह किसी घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा है।